जी चारों तरफ कुछ लोग हैं जो की इधर से उधर जा रहे है और निचे टाइल्स लगी है सफेद कलर की और भूरे कलर की चारो तरफ कुछ पोस्टर भी लगे हुए है।